ओ पेलर बिल्डिंग काफी दूर-दूर है सामने मेंदान दिखाई दे रहा है जिसके बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं काफी लोग बैठके चर्चा कर रहे हैं धन्यवाद।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

सफेद कलर की बिल्डिंग येलो कलर के डिजाइन की हुई दिखाई दे रही है बिल्डिंग काफी सुंदर ऐसी दिखाएं--

फोटो में आसमान दिखाई दे रहा है पिलार दिखाई दे रहे हैं काफी सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं दूर-दूर तक आ पेड़ पौधे फैले हुए हैं वहां पे दूर एक छो बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

एक ग्राउंड फ्लोर पर भी काफी सारे बिल्डिंग में दिखाई दे रही है उसमें काफी सारी जाली लगी हुई है उसका गेट बंद है बिल्डिंग काफी बड़ी और सफेद कलर की है।

एक बाइक दिख रही है जो काले कलर की है जो रॉयल एनफील्ड उ जैसी लग रही है सामने एक हेलमेट भी ब रखा हुआ है धन्यवाद।

ईहा पे कांच लगा हुआ है कांच में काफी सारा सामान रखा आ हुआ है जो क सामान अंदर के साइड से रखा हुआ है यह दुकान देखो बाहर से देखा हुआ वर्णन है यह किसी दुकान कि दरवाजे के बर्णन कि आयाज हे--